जय वैष्णो क्रन क्रेन सर्विस लिखा हुआ हैं।

मतलब ये यहां पे ये गाड़ी खराब हो जाओ तो इनको टोचर कर के ले जा ले जाने का--

ब्रा और पैंटी वेंटी की ये शॉप है और यहां पे ब्रा और पैंटी के अलावा कुछ नहीं मिलता है यहां पे।

द सम्राट अशोक लिखा हुआ है और यहां पे गाड़ी खड़ी हुई है यहां पे आप देख सकते हो--

लिखा हुआ है यहां पे--

यहां बाइक खड़ी हुई है यहां पे गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं यहां पे दवाइयां लिखा हुआ है।

देख सकते हो आप यहां पे पता नहीं क्या क्या अटर चटर रखा हुआ है।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

पेड़ पौधे लगे या पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां पे लाइट कि ये तार दिख रही है।

जो देख रहे हैं देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और यहां पे ये--

सर्विस टोचन सर्विस वी गाड़ी है और यहां पे ये गाड़ी खराब हो रही हैं ये इस गाड़ी को--

गाड़ी दिख रही है यहां पर टिकट घर दिख रहा है यहां पर बाइक भी दिख रही है यहां पर आप देख सकते हो।

एक पुरुष ने साइकिल के सहारे खड़ा हुआ है और यहां पे आप देख सकते पेड़ ही पेड़ दिख रहे है।

ये यहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई है।

रखा हुआ यहां पे गाड़ी रखी हुई खड़ी हुई है।

यहां पे आप देख सकते हो विद्या इंस्टीट्यूट इनफॉरमेशन लिखा हुआ है इंटर गेट लिखा हुआ है यहां पे ये आदमी खड़ा हुआ है।

और यह पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां पे एक बाल्टी भी रखी हुई है डस्टबिन रखा हुआ है।

यहां पे आप देख सकते होगे एक आदमी है ये हाथ में अमरुद पकड़े हुए है यहां पर पे--